लकड़ी की मेज है और कुर्सियां हैं।

और पीछे कुछ चीजें पड़ी हुई हैं और लोहे के पीलर है।

रंग बिरंगे बैलून लगे हुए हैं।

यहां पे एक बें दो बेंच है।

यह एक सलून की दुकान है।

फिर वहां पे एक सोफा रखा हुआ है।

और इस जगह के अंदर हरी हरी घास है।

और बोर्ड पे बुद्र और डाक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति है।

यहां पर दोचटाई बिछी हुई है।

यहां पर काफी सारे गमले हैं।

यहां पर छोटे बड़े पेड़ हैं।